ये एक बिल्डिंग नजर आरी है बिल्डिंग काफी सुंदर नजर आरी है। ये बिल्डिंग बिल्डिंग हॉस्पिटल से नजर आरी हैं।